कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं धूंलापन दिखाई दे रहा है।

लोग छोटे छोटे दिखाई दे रहे है जो बहुत सारे बने हुए है।

आस पास कुछ ये दिखाई नहीं दे रहे है।

और चलते फिरते नजर आ रहे हैं आगे में पेड़ पौधे है जो मगर दिखाई दे रहे हैं। हरे पत्ते भीतर दिखाई नहीं दे रहे हैं।

फ्लैट हैं उसमें बहुत सारे खिड़की हैं बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ हैं जो अस्पष्ट रूप से दिखाई नई दे रहा है उसके पीछे--

और नीचे बहुत दीपों का जो है शॉप जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरा दिखाई दे--

रैक पर जो है छोटे मोटे गुड़िया दिखाई दे रहे हैं जिसमे एक लगता है कि ये गिफ्ट का सेंटर है।

आगे में बगल में टेबुल लगे हुए है और बीच-उच में फूल अगरबत्ती --

बहुत कुछ समग्री पूजा के रखे हुए हैं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे है राइट साइड लेफ्ट साइड से कुछ नहीं दे --

कुछ और बिल्डिंग में भी कुछ लटक रहा है।

गेट बना हुआ है जो स्पष्ट रूप से--

अगर बगल जो है कुछ ठीक नहीं रहे हैं राइट साइड लेफ्ट साइड जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।